ये फोटो में देख सकते है एक महिला नज़र आ रही है जोकि कप ले रखी है। एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है जो कि मास्क पहना रखा है। .

अगल-बगल की दीवारें पर भी चित्रकला की गई है। रंग-बिरंगे पैंट । आगे आपको झालर नज़र आ रहे हैं रंग बिरंगे। .

इतना नीचे एक देख सकते है एक बच्चा है एक व्यक्ति है जो कि साथ में खड़े रखे हैं। बगल में उनके-- .